हाफ पैंट पहना हुआ है हाफ टी-शर्ट पहना हुआ है --

कीपिंग कर रहा है।

ईट का टुकड़ा है ऊपर आसमान दिख रहा है ब्लू कलर का आसमान है गेट बना हुआ है और डिज़ाइन का बना था।

बहुत पुराना जवानी का खंडहर लग रहा है ।

दो आदमी आपस में बात करें एक औरत है एक सभी लोग चेयर पे बैठे हुए हैं बैठके खाना खा रहे हैं कुछ लोग खड़े हो कर खाना खा रहे हैं लाइट का व्यवस्था है बहुत सुंदर घर है ।